और बोहोत सारे पेड़ है जो पेड़ देख कितना अच्छा फील आरा है यहा बेटने वालो की लेवल कम अजागा सबसे बड़िया--

इसमें लिखा हुआ है कम कम ग्रो विथ अस करके है और यहाँ पे एक फॅन लगा हुआ निचे की साइड में शायद निचे कोन हवा लेता होगा जो बेठता होगा।

ये एक मजीद है मजीद के बहार ग्रीन कलर और वाइट कलर पेंटिंग है नीचे--

ब्लैक कलर का वो है और ये मजीद की टोपी निकली हुई होती है जिस पे बहोत सारे स्पीकर निकले होते है।

स्पीकर से ये बोलता अल्ला हु अकबर हु अकबर अल्ल्ला--

और एक इसके साइड में एक रोड निकल के गया है बास पेल अ वो लगे हुए क्या इलेक्ट्रिक पोल बोलते है जो सीमेंट वाले--

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट पे बाहर दो रिसेप्सनिस्ट खड़े है और बाहर वेटिंग कर रे है एक टेलीफ़ोन रखा हुआ है और एक फिशपोट है।

ये शायद दशहरा का फोटो है एक रावण खड़ा बना लिया इन्होंने लोकल रावण है जिसके ऊपर एक ही सर है सर तो दस होने चाहिए लेकिन एक ही बना रखा है इन लोगों ने।

और यहा पे वायर भी देख सकते है आपको पीछे अ दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और देखो कितनी सारी भीड़ है।

या क्या है और पार्क बहार से देखने में जितना अच्छा है उतना अन्दर से है देखो तो आपको तब पता लगेगा और ये सब अच्छी चीजे है ये होनी चाहिए।

और यह ग्रीन हरा भरा ग्राउंड है ना वह सबसे अच्छा ग्राउंड है और स्कूल इस स्कूल की फीस भी ठीक ही ठाक होगी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि यहां बच्चे ज्यादातर पढ़ने ही आते है।

मार्केट एरिया का रोड है जिस पे बहार देखने के लिए मिल सकता है।

यह शायद यह आगे ट्रांसफर करती होगी डॉक्यूमेंट एक अंदर और एक अंदर अंकल बैठे हैं वह शायद शोरूम के मालिक होंगे इसलिए सुजुकी का लोगो लगे एस करके--

और एक कुर्सी लाल कलर की खाली है और यहाँ पे बहोत सारी कुर्सी खाली है अभी तो कोई कस्टुमर तो आया नही है कस्टूमर आना चाहिये वै --

और उधर गाड़ी खड़ी है बलेनो वगेरा ये अल्टो खड़ी है यहाँं पे एक बाइक खड़ी है और ये जगह अच्छी लग रही है देखने में और जाने --

और एक ये अंकल जारा यापे बलून वगेरा लग रखे है देखो टेबल पे अ गुलाब लगा के रखा है सबसे बड़िया चीज यहा की यही लगी सबसे अच्छा--

और ये कॉलेज में बहोत सारे पिलर हैं रेड कलर से पेंटेड और तीन मंजिल कॉलेज लग रहा है और पिंक कलर से पेंटेड है ब्लू कलर के गेट हैं इसमें--

पर अच्छा पोस्टर्स वगेरा भी लगे है सबसे अच्छ कॉलेज है यहाँ का जितना आपको--

ये एक पोर्ट लग रहा है पोर्ट में शिप है शिप में ये सारी क्रेन लगी हुई है एक टावर लगा है।

और ये पोर्ट का जो जितना भी लग रहा है यहाँ पे शाही आपको साथ ही जाती रहती है देखने के लिए--

एक कंटेनर उठाने के लिए सायद काम आते होंगे और कंटेनर को इदर से उदर लोड करते होंगे इदर इदर खिसकाते होंगे।

जो के अजित करा मशीन अइंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है और ये आपको देखने को लिए मिल जायेगा।

और यहा पर बहोत सारी गाड़िया है और ये एक तालिश में है और यह पे बहोत सारे पेड़ है और बाइक खड़ी हुई है बहुत सारी ब्लैक कलर का गेट है पेंटेड --

ये एक्सिस बैंक का ए_टी_एम है ए_टी_एम के अंदर एक अंकल ब्लैक कलर की पैंट और ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए खड़े हैं पैसे निकाल रहे हैं।

ये बोले जितना भाव लगया है उतने भाव की देंगे हम दस रुपए कम करने वाले नहीं है।

गेट ब्लैक कलर से पेंटेड है और ये छोटी सी कार चेक पोस्टर्स पे डी कलर का पेंटेड है।

यह एक मंदिर का फोटो है मंदिर मे बहोत सारे लोग आते जाते हैं और ये मन ये मंदिर देख सकते हो आप मंदिर में बहोत सारा अच्छा लग रहा--

और एक पास्ता का लगा हुआ है एक कॉफ़ी का लगा हुआ है एक टेबल है बहोत अछि लग रही है जिसके आस पास--

आप लोग देख सकते हैं ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है मंदिर में देखो कितनी साफ सफाई है बाहर मिट्टी है लेकिन मिट्टी लेके पैर अंदर जाएंगे तो गंदा हो जाएगा मंदिर।

बाहर बजरंग बली बाबा का फोटो लगा हुआ है और उपर दो फोटो लगे हुए भगवान जी के और एक अंकल आपको अन्दर जाते दिखाई देरे--

ये आप देख सकते हो बहाल आम अहमेद बुक डिपोट नाम से एक दुकान है।

और यहां पर मतलब सारी चीजें आपको खरीदने का कोई जरूरत यहीं से खरीदो यहीं पे पढ़ो सब कुछ यहीं पे मिले--

और आप दो लोग देख सकते हैं ये शाइन पोलिश करके एक दुकान है इसपे लिखा है स्पेस फॉर लीज यहां लीज पे सारी चीज मिलती हैं।

ए आई माल है यहा पे बहोत सारे स्कूटर वगेरा खडे हुए है और स्कूटर का नंबर है चण्डीघड जीरो चार सिट पेतिस जीरो सात करके--

यहा पे सायद अ क्रिकेट वगेरा खेलते होंगे बच्चे बच्चे नही बड़े होंगे लेकिन बच्चा की बोलेंगे जब पड़रा हे तो--

ये आप देख सकते हो ये एक कोलेग वगेरा के बाहर का एक रास्ता है जहा से जाता है और पास में ही पार्क टाइप का है एक--